सड़क है सड़क के ऊपर एक बस जा रही है। ऊपर नाम लिखा हुआ है वी आर सारण ।

दुकान के आगे मोटरसाइकिलें और एक स्कूटी है सफेद कलर की स्कूटी पे एक लड़की बैठी है।

एक लड़की है जिनके सफेद कलर के म कपड़े पहने हुए और इस्टेज पे खड़ी है इस्टेज का कलर रेड है।

यहां पर सामने ममता मोबाइल इलेक्ट्रिक रिपेयरी देव नारायण इ मितरे यहां पर--

यहां पर ग्राउंड के अंदर कुर्सी लगी हुई है जहां पर दो तीन लुगाई बैठी है और पास मे कुछ लड़कियां खड़ी है।